बस टेस स्टैंड है उसके में बगल में दो आदमी खड़ा है।

और लोग बैठे है एक दूसरे से बात कर रहे है गोल्डन कलर का बे बेंच बेंच है इमेज है और उसके बगल में गोल्डन गोल्डन चेयर है फ्लावर बहुत सारे है लाइट --

स्टेज पर उसके गोटे में गोल्डन गोल्डन कलर का है और पायजामा पहन हुआ है और गोरे रंग का है उसका पैर उठा हुआ है।

स्कूल है उसमे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए है कोई आर्ट पेपर से बना रहा है कोई गोंद से कुछ सामान चिपका रहा है रेड कलर का दीवाल है ब्लैक कलर का खिड़की है उसमे लोहे का ग्रील बना हुआ हैं।